और इसपर बहोत सारी पैडी लगी हुई दिखाई दे रही है और यहां पर एक--

मेरे सामने एक ऑफिस सा दिखाई दे रहा है।

है पारक में यहां पर एक--

उपर बहोत सारे पाइप भी लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ आदमी एक दूसरे से कुछ कह रहें--

में कुछ काम कर रहा है मिस्त्री ने बोनट खोला हुआ--

यहां पर कुछ आदमी भी खड़े हुए दिखाई--

गाड़ी सीमेंट ईटों से बनी हुई--

दे रहा है और इसका कलर --

यहां पर एक आदमी खड़ा हो के मजदूरों को इंटरेक्शन भी दे रहा है और यहां पर--

कुछ लोग खरीदारी भी करने आए हुए हैं और कुछ लोग इधर उधर--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

मेरे सामने कुछ काट की रेहड़ी सी नजर आ रही है।

मेरे सामने एक पहाड़ दिखाई दे रहा हैं पहाड़ मगर बहोत सारा पत्थर लगा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

मेरे सामने एक कमरा दिखाई दे रहा है कमरे की दीवार का कलर --

हरा है झील में एक नौका भी दिखाई--

एक मेला दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सारे लोग भी इकठ्ठे हुए दिखाई--

खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर जोड़ने के लिए--

हरे दिखाई दे रहे हैं और मोर के पंख ब्लैक भी दिखाई--

मेरे सामने एक घर दिखाई दे रहा है घर बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है घर की दीवार--

इसके सामने एक स्विमिंग पूल भी दिखाई दे रहा है स्विमिंग पूल का पानी नीला दिखाई दे रहा है।